किराना स्टोर है ये स्टोर काफी बड़ा है इस स्टोर में काफी लोग आते हैं।

और लोग यहाँ पर फूलों के गुलदस्ते खरीदते हैं और उससे शादी में एनिवर्सरी में बर्थडे में उपहार देते है और ये काफी महंगे होते हैं इस लोग देना काफी पसंद करते हैं ।

और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बैठने की व्यवस्था है।

के लोग आते हैं प्रे करते हैं मोमबत्तियां जलाते हैं और यहाँ पे एक फादर होते हैं जो लोगों को प्रे करवाने में मदद करते हैं।

फोटो भी खींचा सकते हैं और यहाँ पे बहोत ही अच्छी तरीके से फोटो खींची जाती है बहोत ही सस्ते दामों में जैरोक्स किए जाते हैं जिसके कारण लोग यहाँ पे आना काफी पसंद करते हैं।

पार्क है और यह पार्क बहुत ही बड़ा है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे है। जो कि लोग आते है देखने के लिए और यहाँ पर काफी अच्छा वातावरण होता है। जिसके कारण लोग यहाँ पर आना काफी पसंद करते हैं और--

यहाँ पर लेडीज जेंट्स सभी के कपड़े मिलते हैं जिसके कारण इस मॉल में बहुत भीड़ होती है।